ये मुस्लिम धर्म का है जहा नमाज लोग पढ़ मस्जिद कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं अपने खुदा से दुआ मांगते हैं।

ये लोग देखने मे एक जुट हो कर देख रहे है और यहाँ सब खेल मे मग्न है और यहाँ बड़े बड़े मकान हैं।

और यहा पे एक छोटे पैड है जिससे घेरा गया है ताकि वो बड़े हो सके और अच्छे से विकसित हो सके पूर्ण रूप से विकसित हो सके इसलिए इसे घेर दिया गया है और यहा पे बड़--

और ये उची बिल्डिंग है यह किसी अमीर आदमी का घड है जो की बहुत ही सुंदर और बेहतरीन और खूबसूरत है इसमे लोग रहते है और बहुत सारी चीज़े होती हैं।

यहा आप देख रहे होंगे की यहा पे एक मकान बन रही है और इस के बगल मे मकान है जो की अत्यंत ही है खूबसूरत है और यहा पे लोग रहते है ।

यह किसी अस्पताल या किसी चीज़ का बड़ा घर लग रहा है जहां कि लोग आते है यहाँ से देख रहे है कि पेड़-पौधे से लदे हुए है और ये आदमी एक बाइक से जा रहा है और --

यहाँ पे जो है की हिरण का बच्चा जो है कि आपस में खेल रहे हैं और चारों तरफ पेड़-पौधे लगे हुए हैं और बीच में जो है कि फूल झर के बिखरे हुए हैं जहाँ की हिरण का बच्चा खे उछल-कूद कर रहे हैं।

और खुशियों का त्योहार मनाते है यहाँ मिठाई लेने से घर में खुशहाली आती है।

ये एक मॉल का तस्वीर है जहाँ अनेक प्रकार के कपड़े मिलते हैं।

ये कई नदी की किनारे लोग मस्ती कर रहै है अपने आनंद और अपने साथ सेल्फ़ी ले रहै है यह कुछ गाड़ी खड़ी हुई है और आदमी अपनी साथ फोटो ले रहै है।